तथा सभी का प्रतिबिंब एक बड़े कांच पर पड़ रहा है तथा पीछे के दीवार में कुछ भारतीय ध्वज लगे हुए हैं।

इस छाया चित्र में बहुत बडी नदी दिखाई दे रही है नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ --

कर्मचारी कुछ चार्ट बना रहे हैं।

इस छाया चित्र में बहुत सारे पुरुष पे बहुत सारी महिलाये दिख रही है। सभी एक पंक्ति में लग कर नृत्य कर रहे है।

इस छाया चित्र में बहुत सारी महिलाऐ नऐ कपड़े पहन हुए दिखाई दे रही है। दो महिला नृत्य कर रही है।

इस छायाचित्र में काफी गाड़ियां दिख रही है। एक बड़ी गाड़ी को दो व्यक्ति साफ कर रहे हैं।

वे दोनों तरफ बहुत सारे हरे भरे खेत के दिखाई दे रहे हैं। खेतों में बड़े-बड़े पेड़ हैं व कुछ दूर पहाड़ दिखाई दे रहे --

इस छाया चित्र में बहुत सारी महिलाएं खड़ी होकर नृत्य कर रही है ।